इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बड़ी सी टेबल दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारी--

इस फोटो मैं मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं।

टैक्टर दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे--